सामने लकड़ी की बनी हुई एक तख्त रखी हुई है जोकि पानी में नीचे डूबी हुई है और सामने एक बहुत बड़ा पूल बना है वहाँ एक मन्दिर बना है लगे हैं मन्दिर के।